आह ऊपर कपडे से डेकोरेशन है जो की पिंक कलर का येलो कलर का रेड कलर का पर्पल कलर का हैं।

ये एक शॉपिंग मॉल है यहाँ पे सभी के रेट के टैग लगे हुवे है कैज़ुअल ट्राउजर फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड तक है।

एंड केलोग्स कॉर्नफ्लेक्स रखे है ब्राउन गोल्ड रखा हुवा है येलो कलर के पैकेट है रेड कलर के पैकेट है

खिड़की से झाॅंकते हुए दिखाई दे रही कुछ लेडीज पौधे लगते हुए दिखाई दे रही है।

आ पिन कोड लिखा हुवा है आइट वन फाइव थ्री डबल फाइव वर्किंग आवरस टेन टू टू पी.एम. ।